ब्लूएस ब्लूएसशिंग्टन नाम की एक दुकान है के अंदर का है जहां पर --

पॉलिश करता हुआ नजर आ रहा है। यह इसको चमकाता हुआ नजर आ रहा है। यह एक मैकेनिक है जो इस कार्य को ठीक कर रहा है या इसका बोनट बना रहा है।

शादी के टेंट की है जहां पर ये टेंट लगाया गया। यह एक वाटिका के अंदर इतना प्यार टेंट लगा रखा है। इस टेंट के अंदर --

प्यारे से खेत कि जगह के खेत में हरियाली और फसल बो रखी है। शाम के समय की फोटो है। जहां पर एक --

यह बहुत मोडर्न जमाने का कैफे है।

इस खाली सुनसान एरिया में खड़ी है। यहां पर कोने में कचरा गहरा दिखाई दे रहा है गिर हुआ।

होटल की है। होटल के बाहर का एरिया बोहोत ही सुंदर है। साइड में पार्क लगा --

मंदिर की है। मंदिरों के अंदर एक मूर्ति है। मूर्ति को बोहोत सुंदर और सोने से बना रखी और पूरी गोल्डन --

दिखाई दे रही है। एक पुड़िया के ऊपर से लिया गया फोटो है जहां पर नदी के ऊपर सूर्य का पानी सूर्य कि --

यह बट्टा शोरूम हे । अलग-अलग प्रकार के सामान मिलते हैं जूते-चप्पल --